ये एक साइकिल सही करने की दुकान है जहां पर साइकिल करी जाती है और साइकिल में हवा डाली जाती है।

यह एक जिम करने की जगह है जहां पर जिम करने की मशीन रखी हुई है।

और इन लोगों को कुछ सिखाया या बताया जा रहा है एक विकर पुलिस की ड्रेस में खड़ा है।

और अंदर दुकान में एक आदमी बैठा है।

और एक वाइट और ब्लैक कलर की कैप लगा रखी है जिस पे बॉय लिखा हुआ है।

यहां पर एक लड़क बैडमिंटन खेल रहा है जिसने वाइट और--

यह एक जे_सी_बी मशीन है जो बड़े-बड़े--

पाइप में बहुत सुंदर पैदे दिख रहे हैं।

यह यह एक कार मैकेनिक की दुकान है जहां पर दो वाइट कलर की कार खड़ी है।

जिस पे तीन गाड़ियों का पोस्ट तीन या चार गाड़ियों का पोस्टर लग रहा है और पीछे एक--

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसमें कुछ कपड़े टंगे हुए हैं।

यह कोई गंगा जी का दृश्य जिसमें बहुत से लोग --

यहां पर कोई एक स्टेज लगा हुआ है जिस पर--

लाइट ग्रीन पेन रखी है और एकने --

ये पेंटिंग बनी हुई है वह पेंटिंग फूल की दिख रही है।

ये एक मार्केट कर दस्सी है जहां पर बहुत जाम लगा हुआ है ।

यह एक खूब बड़ी नदी है जो जिसमें ब्लू कलर का पानी दिख रहा है।

जो ब्राउन कलर की है उस पर कई तरीके की कॉपी किताबें रखी हैं।

और सभी गाय अलग-अलग कलर की हैं कोई ब्लैक कलर की है कोई वाइट कलर की है।

ऊपर टीन पड़ी हुई है गाय के ऊपर और खिड़कियां भी दिख रही हैं जाल वाली खिड़की बनी हुई है।

हरी हरी घास दिख रही है और जंगल में झोपड़ी बनी हुई है।

स्टेज येलो कलर की बन रही है और नीचे उसकी पैरी--

यह एक अस्पताल का दृश्य है जिसमें एक वॉडवॉय है और एक नर्स है।

तीन लड़की दिख रही हैं और एक लड़का दिख रहा है।

सब ब्लैक कलर की चेयर पर बैठ के काम कर रहे हैं।

माला लटक रही है स्टेज बहोत सुंदर लग रही है और लाइट भी चमक रही है।

ये किसी रूम का दृश्य है जिसमें कई बेड पड़े हुए हैं बेड पे--

बेड पर सभी पर एक-एक पिलो रखा हुआ है।

और उसकी दुकान लाइट ग्रीन कलर की है उसकी दुकान में एक टी_वी भी रखा हुआ है जो बहुत छोटा है।